और बहुत बड़ी छत भी बनी हुई है।

जिसपर खोने का साइन दिया हुआ है।

यहां पर एक व्यक्ति ने कार को--

यह बच्चों के खिलौने हैं रंग बिरंगे नीले--

यहां पर एक मछली को--

यहां पर एक दुकान दिखाई गई है।

और यहां पर एक डमी भी हुआ है यहां--

यहां पर एक गेट और खिड़की भी है।

यहां पर एक बहुत बड़ा टेंट लगा है।

अंदर की ओर बहुत सी सुंदर सी लाइटे भी लगाई गई हैं।

ऊपर एक लैबोरेट्री बनी हुई है जिसका की साइज बहोत ही बड़ा है।

यहां पर गाड़ी मोटरसाइकल बाइक भी चल रहे हैं और--

यहां पर एक बहुत सी सुंदर कोठी दिखाइ गई है।

के समय में लाइटे भी जल रही है।

यहां पर हमारे पाले हुए कुत्तों के लिए--